पर एक लेडी बैठी हुई है मेडिकल की।

और यहाँ गौएठा है गोबर का बना हुआ।

अ हेलमेट्स बहुत सारी और अच्छा लग रहा है देखने मे --

इ एक रेलवे स्टेशन --

अ कलर में हैं। अ ये थोड़ी सी येलो भी है ऑरेंज --

पेड़ पोधे हैं लगे हुए हैं। सिर्फ पेड़- पोधे ही पोधे नजर आ रहे हैं।